सारी ट्रीस भी हैं। लैम्प पोस्ट भी है।

आसपास बहुत सारे पेड़ है और सामने का रास्ता मिटटी का है।

ये स्कूल में बोहोत सारे स्टूडेंट्स पढ़ता हैं।

यहाँ चर्च में एक अनुष्ठान हो रहा है बहुत सारे बच्चा लोग है। महिला कुछ पुरुष भी खड़ा है उसके पास बहुत सारी छोटा सा पेड़ दिखता है।

ये एक लाइब्रेरी है लाइब्रेरी बहुत बड़ा है। पर हर सारी बुक मिलती है जो यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट है। मेरे रूम के अंदर कुछ दिख रहा है।

अ एक लाज है। लाज बहुत बड़ा है। यहाँ पर एक विवाह उत्थान हो रहा है। ये बहुत अच्छा से सजाया है। एक फूल की गेट है।

पर एक पहाड़ दिखता है पहाड़ बहोत बड़ा-स् है सुंदर भी है। ड् की आस-पास बहुत सारी पेर है। यहां पर बहुत सारी लोग रोज घूमने आती है।

ये एक चर्च है बहुत बड़ा है सुंदर भी है चर्च के आस-पास बहुत सारी लाइट्स से सजा हुआ है। रोज यहाँ पर बहुत सारे लोग आती है।